जिसके ऊपर लाल झंडा भी है तथा निचे सड़क भी है सड़क के किनारे मंदिर से साइड एक बाइक सटी हुई है तथा लोग भी दिखाई दे रहे है।

यह फोटो एक बहुत बड़े ग्राउंड पारक की है।

इस फोटो के अंदर एक मोर दिख रहा है जो की सड़क के किनारे खड़ा हो रखा है मोर का कलर ब्लू और नील--

तथा सड़क के बीचो-बिच एक व्यक्ति भी नज़र आ रहा है।

नदी के अंदर भी चमक रहा है तथा ऊपर आसमान खुला दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर के अंदर बहुत सारी साइकिल दिखाई दे रही है जिनके कलर --

लोहे है और खम्भा है।

तथा बैट के पीछे भी लोहे का जाल है आगे भी लोहे का डंडा लगा हुआ है।

इस फोटो के अंदर चारो ओर से भवन है तथा भवन सफ़ेद रंग का है।

उसके बीचो-बीच पार्क है पार्क के अंदर एक सुन्दर सा फूलस्तो का बना रखा है इसमें फूल रंग-बिरंगे है।

और लाल कलर का है फूलो के पास कई तरह के बाउंड्रीया भी है।

और नीचे एक भूमि हैं जो की भूरे रंग की है मेज का कलर भी भूरे रंग का है।

तब एक-दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए है।

तथा उसके पास एक व्यक्ति खड़ा हो रखा है जो की--

अल्फाबेट में लिखा हुआ हैं जो की लाइट से जगमगा रहा है मॉल तीन-चार मंजिल का है जो की सफ़ेद और येलो रंग का है मॉल के अंदर बहुत--

यह सिनेमा हॉल है।

और एक खिड़की भी दो हैं खिड़की भी दिखाई दे रही हैं सिनेमा हॉल की जो चेयर वो है सफ़ेद रंग की है उसपे कुछ लिखा हुआ है।

इसे ये तथा नीचे के साइड सफेद पिलर द्वारा जिसपे बोर्ड लगा हुआ है।

तथा उसके सामने हरे रंग का ग्राउंड है जोकि लो लाल गुलाबी लोहिया तारों से घिर चूक घिरा रखा--

बोर्ड है सफ़ेद रंग का खिड़कीयो के बीचों-बीच भी बोर्ड हैं तथा गेट कलर ब्लू हैं बगल में भी एक बोर्ड है।

सफ़ेद और भूरे कलर की है।

तथा तीनो महिला के पीछे एक ब्लैक कलर का तिरपाल लगा है और बगल में भी--

गुलाबी कलर का तिरपाल लगा हुआ है तथा नीले कलर का भी लगा हुआ है।

तथा बिल्डिंगो की खिड़किया भी नज़र आ रही है और अंदर लाइट भी दिख रही है खंभ--

तथा ऑफिस में की लाइटे भी जल रही है जिसकी दीवारे सफ़ेद है।